यहा बहुत से वेडिंगस नजर आ रहे है| व्यक्ति दिख रहे है| वेडिंग्स एक व्हाइट कलर के है।

मिरर दिखाई दे रहा है| लाइट्स दिखाई दे रहे हैं| बैग है और एक वाटर बोतल भी दिखाई दे रही है।

शॉप नजर आ रहा है जहां पर कैंची दिखाई दे रही है| पेन दिखाई दे रहा है और बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे है और एक फैन दिखाई दे रहा है।

चेयर रेड़ कलर का है| वही कुछ बॉटल दिखाई दे रहा है| और डोर दिखाई दे रहा है और रेड़ कार्पट फ्लोरिंग पर दिखाई दे रहा है।

कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स में दिख रहे है सोलर पानल लगा हुआ--

यह दिख रहा है जहां बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो की कंप्यूटर पे काम कर रहे है| कंप्यूटर दिख रहा है कीबोर्ड दिख रहा है माउस दिख रहा है और स्टेपलर दिख रहा है।

जो स्तंभ है वो रेड़ कलर से रंगा हुआ है| और वहाँ पर कुछ वस्तुएं भी रखी हुई है।